आदमी सब यहाँ पे इंडियन आदमी सब भी यहाँ पे छोटा-छोटा काम ऊम सब चलता है यहाँ पे --

यहां पर बोर्ड लगा हुआ है। फिर मोदी का फोटो लगा हुआ है। साइड में कुर्सी है। यहां पर बिल्डिंग भी है। बिल्डिंग के अंदर खिड़की लगा हुआ है। यहां पे बोर्ड लगा हुआ है। एगो मोदी का फोटो है।

ये बिल्डिंग क्या--